चित्र में दिखाई दे रही जगह एक हेयर सैलून की है।

जहां पर लोग अपने बाल कटवाने आते हैं अपने बालों को अलग अलग रंग करवाने आते हैं।

किसी मंदिर जैसे स्थान की लग रही है।

बहुत ही आनंद ले रहे हैं।

चित्र में दिखाई दे रही जगह--

चित्र में दिखाई दे रही जगह--

चित्र में दिखाई दे रही जगह एक कार मैकेनिक शॉप की है।

यह तस्वीर किसी खेत की है।

और मिनी टॉयज रखे गए हैं।

एक काले रंग की कार की खींची गई है।

उनके रेट का बोर्ड लगाया हुआ है।

अपनी गाड़ियों वे मोटर व्हीकल में--

यह तस्वीर रॉयल एनफील्ड के शोरूम की है।

लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए बुलेट बाइक खरीदें हैं।

और सभी फ्लोर में खिड़कियां लगी हुई हैं।

यह खिड़कियां अंदर कमरों को ठंडा रखती है।

इस रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने के लिए आते हैं।

इस रेस्टोरेंट में एक ए_सी भी लगा हुआ है।

इस खेत में कनक फसल की कटाई की गई हैं।

यह तस्वीर एक कंस्ट्रक्शन साइट की है।

उसके ऊपर शेड डाल रहे हैं।

यह तस्वीर एक सब्जी की दुकान की है।

जहां पर बहुत से किस्म के पौधे लगे हुए हैं।